यह एक होटल है होटल के ऊपर एक बोर्ड लगाया हुआ है।

किला को बहुत सारा ईटा से जोड़ा हुआ है।

नीला कलर के बादल दिखाई दे रहा है।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

एक पोल में लाइट लगाया हुआ है।

असमान में व्हाईट कलर का बादल दिखाई दे रहा--

यह एक बहुत बड़ा नदी है।

नदी में एक पोल गाड़ा हुआ है पोल में तार घीचा हुआ है।

दुकान के बाहर बहुत सारा लिखा हुआ है।

यह एक स्टेज है स्टेज में डांस कर रहे हैं।

स्टेज के बगल में पर्दा लगाया हुआ है।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

और लाइट भी जल रहा है जो सफेद कलर का है।

एक आदमी जिम कर रहा है।

और बहुत सारा खिड़की भी लगाया हुआ है।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

घर में एक आदमी कुर्सी में बैठा हुआ है।

और गाड़ी भी लगाया हुआ है।

घर को वाइट रंग से पेंट किया हुआ है।

कुर्सी का कलर लाल कलर का है।

एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है।

और लाइट भी जल रहा है जो सफेद कलर का है।

बैंक का कलर वाइट रंग से पेंट किया हुआ है।

दुकान मे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

घर में पंखा भी लगाया हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा दुकान है।

यह एक बहुत बड़ा मॉल है।

दुकान के बाहर कुर्सी भी रखा हुआ है।

माला का कलर पीला कलर का है।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

घर के बाहर एक गाड़ी लगाया हुआ है।